यह एक ए.टी.एम. है । यह ए.टी.एम का नाम इंडिया पोस्ट है । यहाँ पे चौबीसों घंटे आदमियों लोगो की सेवा करती है और यहाँ चौबीसों घंटे खुले रहती है ।

यह एक स्कूल है। यह स्कूल प्लस टू इंटर स्कूल है।

यह एक झरना है। यह झरने के नीचे बहुत से आदमी नहा रहे है। यह झरना ऊपर से पानी गिरता है। यह देखने में अत्यंत सुंदर लगता है। यह पानी लगभग तीन सौ मीटर ऊपर से गिरता है।